एडवांस्ड फंक्शन्स पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे छोटे कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएँ
हम एक ऐसे फंक्शन का वर्णन करेंगे जो कि आपको एक मान इनपुट करने की अनुमति देता है
और फिर एक गणितीय ऑपरेशन के बाद इससे एक मान मिलता है
अतः हम फंक्शन बिलकुल उसी प्रकार बनाएँगे जैसे हमने पहले किया था
मैं इसे कैल्क बोलूँगा
और मैं पहले अपना ब्लाक बनाने जा रहा हूँ
यहाँ भीतर मैं नंबर1 नंबर2 एंड एक आपरेटर टाइप करूँगा
अब यह एक संख्यात्मक मान होगा
उपयोगकर्ता के इनपुट पर निर्भर यह पूर्ण संख्या या दशमलव संख्या होगी
यह भी वही होगा और यह एड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई ओर डिवाइड में से कोई एक स्ट्रिंग वेल्यू होगी
अब हमें चाहिए कि हमारे फंक्शन के भीतर हम हमारा कोड बनाना शुरू करें
मैं भीतर एक स्विच स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ
मैं स्विच लिखूँगा और स्विचकन्डिशन बल्कि स्विच का इनपुट ओप रखूँगा
मैं इसके लिए एक ब्लाक बनाऊँगा और मैं लिखूँगा केस प्लस का चिह्न फिर इसे आगे बढाऊँगा
मैं एक नया टोटल नामक वेरिएबल बनाऊँगा जोकि num1के समान होगा जो यहाँ पर इनपुट प्लस नुम2 है
मैं इसे अर्धविराम से ब्रेक करूँगा
अब वहाँ स्विच स्टेटमेंट को एक फंक्शन के साथ जोड़ कर यह करने का संभवतः यह एक बहुत ही सरल तरीका है
अतः आप सभी प्रकार के विभिन्न चीज़ों को दूसरे स्टेटमेंट्स और फंक्शन्स के भीतर उपयोग करने में सक्षम होंगे
अतैव मैंने प्लस के लिए केस बना लिया
अतः जब उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया यह प्लस के बराबर होगा हमें नुम1 का जोड़ नुम2 के साथ मिलता है
अब हमें नीचे जाना होगा और एक अन्य केस बनाना होगा जोकि minusमाइनस है
मैं टोटल नुम1 num2टाइप करूँगा
हम नीचे आएँगे
यह सुनिश्चित कर लीजिये की आप इसे ब्रेक कर रहे हैं
अब हम इस कोड की प्रतिलिपि नीचे बनाएँगे यानि इसे कॉपी करेंगे
यहाँ हम multiplyमल्टप्लाइ लिखेंगे और यहाँ हम डिवाइड लिखेंगे और यह सुनिश्चित कर लें कि आप यहाँ पर चिह्न बदल दें
अब यदि आप नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है तो हमें ईमेल के जरिये संपर्क करने में संकोच न करें
मैं आशा करता हूँ कि हर संभव भ्रम को इसी प्रकार से हल किया जाएगा
डीफॉल्ट रूप से हम अंकनाउन आपरेटर एको करने जा रहे हैं
चलिए मैं इसे देखता हूँ
फिर हम फंक्शन को लाना शुरू करेंगे
मेरे पास कैलकुलेटर या संक्षिप्त में कैल्क नामक फंक्शन है जो संख्या को इनपुट के रूप में लेता है फिर एक दूसरी संख्या और फिर एक ऑपरेटर जो प्लस माइनस multiplyया डिवाइड में से कुछ भी हो सकता है
जैसा कि आपने संभवतः मेरे गणितीय ऑपरेटर में देखा क्षमा कीजिये मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर ट्यूटोरियल में देखा
अब हमारे पास भीतर एक स्विच स्टेटमेंट है जो इस ओप का ध्यान रखता है
जो एंटर किया गया है वो यह लेता है
अब यदि यह प्लस के बराबर है तो याद रखिये यह इसको इस स्टेटमेंट में बदल देगा
यह लिखने में बहुत ही सरल है और काफी सक्षम है
यदि यह plusके बराबर है तब हम एक नया टोटल नामक वेरिएबल बनाएँगे
यह पहली संख्या जो एंटर की गयी है और एंटर की गई दूसरी संख्या के साथ जोड़ी गई है उनके जोड़ के बराबर होने जा रहा है
यहाँ हम बोलेंगे यदि यह minusमाइनसहोगा तब वेरिएबल टोटल अच्छा याद रखिये वेरिएबल टोटल प्रत्येक केस या तो प्लस या माइनस के लिए केवल एक बार निर्धारित किया जाएगा अतः यह टोटल वेरिएबल नंबर1 नंबर2 होगा और उसी प्रकार गुणा और भाग के लिए भी होगा
अब यह बिलकुल कुछ नही करेगा
इसे रिफ्रेश करें
अब यदि हम इस पेज में आते हैंतो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने हमारे फंक्शन को नही लाया
अब अपने फंक्शन को लाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं हम केवल कैल्क लिखेंगे और हम अपने वेल्यू यहाँ रखेंगे
चलिए हम इसे दो संख्याएँ देते हैं मानिए कि 10 और 10 और एक प्लस ठीक हैजिस वजह से 20 हो जाएगा
अब देखिये क्या होता है जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ
अब ऐसा क्यों
इसका कारण यह है कि हमने इसे एको नहीं किया है
हमने इसे केवल एक वेरिएबल की तरह निर्धारित किया है
अतः आदर्शतः हमें क्या करना चाहिए कि हम कैल्क के आउटपुट को एको करेंगे
अब इस समय यह कुछ नही करेगा यदि हम रिफ्रेश करते हैं
हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिटर्न आउट्पुट नहीं है
अतः प्रत्येक केस में हमें जो लिखना चाहिए वह है रिटर्न टोटल
यह क्या करेगा कि यदि आप फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह सोचते हैं यह फंक्शन के वेल्यू को टोटल की तरह निर्धारित करता है
जब तक आप रिटर्न लिखते हैं जो कुछ भी आप यहाँ लिख रहे हैं फंक्शन उसके बराबर हो जाएगा
अतः हम रिटर्न टोटल लिखने जा रहे हैं और हम उसको कॉपी करने जा रहे है और यहाँ नीचे प्रत्येक केस के लिए पेस्ट करेंगे
अच्छा तो स्पष्टतः हमें अंकनाउन आपरेटर ऑपरेटर के लिए यह करने की आवश्यकता नहीं है
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं पाया गया है
000549 000548 और हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं
हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है
अंदाज़ा लगाइए क्यों
इसका कार्य न करने का कारण है क्योंकि मैंने इसे फंक्शन के भीतर ही एकोकिया है
यह गलती है
आप देख सकते हैं फंक्शन का कोष्ठक यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पर अंत
मैं इसे यहाँ नीचे रखूँगा जहाँ इसे होना चाहिए और फिर इसे रिफ्रेश करें
यह 20 है ठीक है अतः हमारे फंक्शन के जरिये हम देख सकते हैं कि 10 10 20 है
अतः चलिए कोई अन्य वेल्यू लेते हैं मानिए कि 13 और 7 और divideभाग
चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है
अच्छा हमें काफी लम्बी दशमलव संख्या मिली
अतः आप देख सकते हैं कि हमने यह काफी अच्छा फंक्शन बनाया है
हमें हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या और एक ऑपरेटर मिलता है
और स्विच स्टेटमेंट के जरिये यह पता लगता है कि कौन सा है और उसपर उपयुक्त ऑपरेशन क्रियान्वित करता है
एक अंकनाउन आपरेटर एरर मिलेगीयदि यह निर्धारित नहीं किया जा सका
अतः उदाहरणस्वरुप चलिए आ लेते हैं जोकि एक वैध ऑपरेटर नहीं है
जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं यह अंकनाउन आपरेटर हो रहा है
इसी के साथ एडवांस्ड फंक्शन्स पर ट्यूटोरियल की समाप्ति होती है
हमने देखा कि हम एक वेल्यू इनपुट कर सकते हैं और फिर रिटर्न कमांड की मदद से हमें एक वेल्यू वापस मिलती है
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेती हूँ
देखने के लिए धन्यवाद